बैंक दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही है।

ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहें हैं।

केम्प लगा दिखाई दे रहा है।

शोरूम दिखाई दे रहा हे।

बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

लड़कियां दिखाई दे रही हैं।